काला दिखाई दे रहा है। इसमें चक्के दिखाई दे रहे हैं। इसमें दीवाल का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है। इसमें बहोत खूबसूरत सजावट दिखाई दे रही। इसमें --

एक मैदान दिखाई दे रहा जिसपे हरी-हरी घास दिखाई दे रही। इसपे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे। इसमें हरे-हरे --

इसपे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें हरी-हरी घास दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारा --

ऑरेंज कलर की जौकेट पहने दिखाई दे रहे। उनके सर पे ऑरेंज कलर का कैप लगा दिखाई दे रहा। लोंग कुछ ठोकते हुए दिखाई दे रहे इसमें।

ये बिजली का खम्भा दिखाई दे रहे है इसमें बिजली के वायर भी दिखाई दे --

व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहना दिखाई दे रहा है। इसपे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इसमें हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे। इसमें --

इसपे टाटा मोटर्स का शोरूम दिखाई दे रहा है उसपे दो बाइक दिखाई दे रही है बाइक का कलर ब्लैक रेड दिखाई दे रहा है इसमें --

इसपे कुछ लोग दिखाई दे रहे है रंगोली बनाते पे सबमे एक जैसी यूनिफार्म पेहनी दिखाई दे रहे है कलर दिखाई दे रहा है कलर का वो --

ये बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है। इसमें बिजली के वायर दिखाई दे रहे। वायर का कलर काला दिखाई दे रहा है। सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही --